यहाँ कुछ मालाएँ दिखाई दे रही हैं जो कि सफेद लाल पीली इत्यादि कलर की दिखाई दे रही हैं।

यहां एक बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है जिसमे छोटे-छोटे केविन बने हुए है वह केवल लकड़ी से बने हुए है नीले कलर के कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहे है।

जमीन दिखाई दे रही है जिसपे बोहोत सारी घांस लगी हुई हैं कुछ छोटे-वोटे पेड़-पौधे भी लगे हैं ऊपर जाके कुछ पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं।

यहाँ कुछ मालाएँ दिखाई दे रही हैं जो कि सफ़ेद कलर की लाल कलर की इत्यादि कलर की दिखाई दे रही है नीचे एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है।

दोनों ने हैलमेट पहना है एक हाथ में बैट लिए है एक बैठा है एक खड़ा है पीछे एक घर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

उस पे कुछ पराठे रखे हुए हैं जो कि पीले हरे इत्यादि कलर के दिखाई दे रहे हैं जो कि आलू के पराठे हैं नीचे एक टेबल दिखाई दे रही है।